ये जो काफी लोग लाइन लगाके खड़े हैं और सीडी बनी है सीडी के नीचे गाड़ी-- ]

स्कूल महा स्कूल है जिस स्कूल के अंदर कुछ टीचरे खड़े हुए है बा बाहर मैदान है जिस मैदान मे हरे घास जमे हुए हैं।